बना रखा हुआ है जिसमें बाल्टी रखे हुए है ईट है और लाल --

इधर है जिसका दरवाजा लाल कलर से --

और एक पेन रखा हुआ है जो वहां पे पंखा भी लगा घड़ी भी है।

और समुद्र के बीचों-बीच से पार किया गया है।

नाटक का माहौल है यहां प्रोग्राम हो रहा है।

किराना दुकान है इसमें बहुत सारे समान हैं।

एक डब्बे में बहुत पीला कलर के डब्बे में --

यहाँ पर एक वाइट कलर का हंस दिख रहा है ।

ज़मीन समतल नहीं है ऊबड़-खाबड़ है और यहां आम का पेड़ एक छोटा सा दिख रहा है जो बोहोत सुंदर लग रहा है देखने में और यहां पर पहाड़ भी बोहोत सुंदर लग रहा है देखने में ।